यहां पर एक बहुत ही बड़ी गुरू कृपा की दुकान है इसके पास में एक मोटरसाइकिल भी है।

कुछ छोटे बड़े पेड़ पौधे भी है यहां पर आस पास में बड़े बड़े घर भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे भी है।

यह ऊपर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है एवं एक गन्ने की मशीन भी है बाहर पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक भी रखे हुए हैं।

दिखाई दे रही है हिंदी में काला कहते हैं जो आसपास में अनेक प्रकार की मानव बस्तीयां अभी देखने को मिल रही है।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

यहां पर मुझे एक बहुत ही बड़ा घर दिखाई दे रहा है जिसके चार स्तंभ हैं।

एक गाड़ी भी खड़ी हुई है पेड़ पौधे भी है।

मुझे बहुत ही मात्रा में पानी दिखाई दे रहा है आस पास में छोटी मोटी बस्तियां भी दिखाई दे रही है।

कटिंग करने की दुकान दिखाई दे रही है जिसे अंग्रेजी भाषा में हम हेयर कटिंग कहते हैं और इसे --

इस घर में कलर सफेद किया हुआ है लाल लाल रंग का कलर भी दिखाई दे रहा है।

के बाहर एक दो पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं बाहर लोहे का सामान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर रेल के पास एक सड़क भी है एक बड़ा स्तंभ भी है अनेक पेड़ पौधे हैं अनेक प्रकार के हैं।

फुटकर व्यापार की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारा सामान है एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है।

बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में मोबाइल सप्लायर्स है एवं --

बहुत ही सुंदर बड़ा पेड़ है एवं आसपास में अनेक बड़े पेड़ भी--